यह एक नर्सरी का दृश्य है सामने पॉट मे --

एक सड़क भी जा रही है ऊपर खुला आसमान भी है धन्य --

पास बीच में एक आदमी खड़ा हुआ है एक डस्टबिन भी रखा है।